यह लोकेशन किसी योगा ग्राऊंड की है यहाँ पर हरेक लड़किया --

और टेडी भी रखे हुए है।

और साथ ही कुछ अनाज उग रहे हैं और --

बहोत सारी लड़कियाँ दिखाई दे रही कुछ बाते कर रही हैं कुछ खड़ी हुई हैं।

कुछ मकान दिखाई दे रहे है हरियाली का मैदान दिखाई दे रहा है।

चैनल लगा हुआ है बाउंड्री लगी हुई है।

किले के बाहर थोडी सी हरियाली हुई है।